सफेद कलर का कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है लाल कलर का कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और हमें उसके अंदर दुकान के अंदर हमें बहुत सारी लाइटे लगी हुई दिखाई दे रही है जो की सफेद कलर की नजर आ रहे हैं और उसके अंदर हमें बहुत सारे फ्रूट रखे हैं।

एक बहुत ही बड़ी सड़क दिखाई दे रही है सड़क का कलर हमें यहाँ पर काला नजर आ रहा है साथ ही साथ हमें यहाँ पर बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो की बहुत दूर-दूर तक का फैले हुए नजर आ रहे हैं साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक--

और एक ऑटो वाला दिखाई दे रहा है उसमे हमे बहुत सारे फुग्गे लगे हुए दिखाई दे रहे है जैसे कि हरे कलर के दिखाई दे रहे है सफ़ेद कलर के नजर आ रहे है।

हमें यहाँ पर एक बहुत सारी दिखाई दे रही है जो के आजु बाजु में लगी हुई नज़र आ रही है और हमें यहाँ पर बहोत सारे ब्रैंड दिखाई दे रहे हैं जो के जिस की लगी हुई नज़र आ रही है और हमें यहाँ पर--

एक बहुत ही बड़ी सड़क दिखाई दे रही है जो के बहुत दूर-दूर तक जाती हुई नज़र आ रही है साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक कार खड़ी दिखाई दे रही है कार का कलर हमें यहाँ पर सफेद नज़र आ रहा है और हमें यहाँ पर--

नजर आ रहे है और हमे यहाँ पर कांच के ऊपर बहुत सारे कपड़े लटके भी दिखाई दे रहे है जो कि देखने मे बहुत अच्छे लग रहे है।

यहाँ पे के बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है और हमे यहाँ पर बहुत सारी साइकिले खड़ी दिखाई दे रही है टिन का कलर यहाँ पर --